कुछ उम्म थालियां रखी हुई दिखाई दे रही है कुछ पूजा का सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक ब्लू कलर का कार्पेट बिछा हुआ है।

ये गड्ढा काफी गहरा है यहाँ पर काफी सारी मिट्टी भी दिखाई दे रही है ।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

एक प्यारी सी गोल्डन कलर का मूर्ति दिखी दे रही है जिसके नीचे का गोल्डन कलर का बना हुआ है जिस में कुछ नक्कासी की हुई है।

ये जगह काफी पूरानी है काफी गन्दी हो रही है यहाँ पर कूछ--

एक बड़ी सी गोल्डन कलर की मूर्ति दिखाई दे रही है जो बैठी हुई है।

यहाँ से सामान का रंग काफी सुंदर लग रहा है।

एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है कुछ दुकानें दिखाई दे रही हैं दुकान के ऊपर काफी सारे तार दिखाई दे रहें हैं यहाँ पर बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

अगर वाइट कलर की मशीन रखी हुई दिखाई दे रही है सामने काफी सारा घोड़ा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर रेड और वाइट कलर की दीवार दिखाई दे रही है

अम--एक कार खड़ी हुई दिखाई दे रही है कार के पीछे काफी सारा सामान पड़ा हुआ है यहां पर कुछ पानी भी पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

कु--यहाँ पर जाल लगा हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर एक रेड कलर की भी कार खड़ी हुई दिखाई दे रही--

बहुत सारी साइकिल खड़ी दिखाई दे रही है सामने एक बिल्डिंग दिखी दे रही है जिस के दीवार काफी गन्दी हो रखी है